उसके ऊपर में एक ताला भी लगाया हुआ है।

इसके पीछे में येलो एंड ऑरेंज कलर का भी ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

जिम का चारों ओर शीशा लगाया हुआ है।

वॉल के ऊपर ए_सी भी दिखाई दे रहा है।

मंदिर के आस पास बहुत सारा जंगलो भी दिखाई दे रहा है।

मंदिर के पास में इलेक्ट्रिक पोस भी दिखाई दे रहा है।

उसके अंदर बहुत सारा सामान रखा--

शॉप के अंदर में बहोत सारा मैटीरियल्स रखा हुआ है।

बहुत सारा परफ्यूम भी दिखाई दे रहा है बहुत सारा तेल भी रखा हुआ है।

सारा ड्रेस भी रखा हुआ है बहुत सारा लॉन्ग पेंट भी रखा हुआ है।

बहोत सारा टाप्स और स्कर्ट्स भी रखा हुआ है।

यहां एक रूम दिखाई दे रहा है रूम के ऊपर में मैट्रिक्स लिखकर दिखाई दे रहा है।

में एक इंसान चेयर में बैठा हो।

दुकान के सामने एक चेयर भी रखा हुआ है।

के सामने चेयर और स्टूल भी रखा हुआ है।

के ऊपर में टेंट भी लगाया हुआ है।

टेंट के सामने में पानी भी दिखाई दे रहा है।

कैफे के बाहर में चार फ्लावर पॉट भी रखा हुआ है।

यहां एक चर्च दिखाई दे रहा है चर्च के एंट्रेंस में एक मूर्ति भी दिखाई दे रहा है।

ऊपर में बड़ा सा पार्ले जी बिस्किट दिखाई दे रहा हैं और मैगी भी दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा भुजिया भी दिखाई दे रहा है।

बिस्तर के नीचे में चेयर भी रखा हुआ है।

सामने में मॉस्किटो नेट भी दिखाई दे रहा है।

उपर में ब्लू बादल भी दिखाई दे रहा--

टेबल में बॉटल्स भी दिखाई दे रहा है।

टेबल के ऊपर मैनू भी रखा हुआ है।

ऑफिस के टॉप में एक घरी भी लगा कर दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग में स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया लिखकर दिखाई दे रहा है।

दृश्य में जनरल हॉस्पिटल अलवर लिखकर दिखाई दे रहा है।

सामने में एक बॉक्स भी दिखाई दे रहा है।

व बड़ा सा हॉल भी दिखाई दे रहा है।

के अंदर में दुल्हन का एंट्री हो रहा है।